सामने हमें एक नदी दिखाइ दे रही है। इस नदी के चार के बिच में एक पुल बना हुआ है जोकि काफी लंबा है और काफी चौरा भी है।

नदी के किनारे किनारे कई पर्वत पठार और बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और नदी काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति के सामने चश्मा पर्स और कैंची रखे हुए हैं और कांच में दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें हरे भरे पत्ते लगे हुए हैं जो की आकर्षक दिखाई दे रहे हैं ।

और लड़की टेबल पर खड़ी हुई है और परदे के पास सितारे भी लगे हुए हैं जो कि चमक चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इस मैदान के बाहर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं | इस रूम पर कई व्यक्ति भी बैठे हुए हैं ।